नीचे अच्छा सा फर्श है पीछे पर्दा लगा हुआ है खिड़की भी दिख रहा बहुत अच्छा लाइट है ऐ_सी भी लगा हुआ है।

उजला-उजला सा है यह खेतों में घूम रहा है हरियाली है लग रहा है हरियाली के नीचे पानी भी है।

बाइक पे दो लोग सवार है जिसपे लाल टीशर्ट हैं एक ब्लू टी-शर्ट पहन के लड़का बैठा है।

नीचे अच्छा सा फर्श है ऊपर पंखा भी लगा हुआ है लाईट भी जल रहा है।

एक और वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं हाथ में बैग लेके पीछे अच्छा सा मडप लग रहा है देखने में पूजा सामग्री रखा हुए है।

पत्थर ऐसे दिख रहा है जैसे की पत्थर के नीचे वो लोग दबे है और हंस रहे है।